और इसको बहुत ही पैसा खर्च करके और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ऐ बिल्डिंग को. इसको देखने के लिए बहुत ही दूर-दूर से लोग आते है।

इसीलिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से बाल कटाने के लिए आते हैं और यह बहुत ही फेमस हम्म सैलून है।

और फ़ोटो लगाके और ये फूल भी पीला कलर का जो बहोत ही इसको पैसा खर्च करके मेहनत से सजाया गया है।

जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं इसको --